यह एक कॉलेज है और यह कॉलेज बहोत ही बड़ा है इस कॉलेज में बहोत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं इस कॉलेज में बहोत ही अच्छी पढ़ई होती है।

बहोत ही कम लिया जाता है किराया इस --

बहोत सारे लोग आते हैं अपनी समस्यो का समाधान कराने के लिए और यहाँ पे --

यह एक फैक्टरी है और यह फैक्टरी बहुत ही बड़ी है इस फैक्टरी में बहुत सारे मजदूर कार्य करते हैं और इस फैक्टरी में लोहे की सामानें बनी जाती है बनाई जाती है।

यह एक मंदिर है और यह मंदिर बहोत ही बड़ा है इस मंदिर में बहोत सारे लोग हिन्दू धर्म के लोग आते हैं पूजा करने के लिए।